किसी बिल्डिंग की फोटो है जिसके बहार कुछ स्टूडेंट्स नजर आ रहे है कुछ फ्रेंड्स नजर आ रहे है एक आदमी एक स्कूटी पे बैठा हुआ नजर आ रहा है और पीछे की तरफ एक पहाड़ नजर आ रही है ये बिल्डिंग दो महले की बनाई गई है ।

फॉर सेफ्टी पर्पस इस इंजीनियर ने एक-दो ग्लव्स भी लगा रखी है और इसके हाथ में कुछ डिवाइस है और ये किसी वायर को कट करने की कोशिश कर रहा है पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा जनरेटर रखा हुआ हैं।